यह चित्र एक रेलवे स्टेशन की साइड का है जिसमें जगह का नाम लिखा हुआ है बोर्ड पर खंबे नज़र आ रहे हैं लाइट के--

यह चित्र एक नदी के किनारे का है जहां पर बोट्स खड़ी हुई हैं नाव में कुछ लोग बैठ गए हैं कुछ नाव खाली है।

कुछ लोग बाहर स्थान पर खड़े हुए हैं। पेड़ नज़र आ रहे हैं। ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है । बच्चे भी हैं ।